एक टेबल नजर आ रही है।

बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है जिस पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है।

नदी किनारे कई पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

मकान में खिड़कियां दिखाई दे रहीं हैं।

कुछ लड़कियां नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है वह साड़ी पहने हुए है।

स्टूल दिखाई दे रहा है।

सोफे पर दो बच्चे बैठे दिख रहे हैं।

रोड नजर आ रही है रोड किनारे एक दुकान दिख रही है ।

एक बोर्ड दिख रहा है जिसपर फेड्रल बैंक लिखा है।